एक रखा है पता नहीं किस जगह का है बहोत अच्छा लग रहा--

मस्जिद की तरह दिख रही है और यहां पर बोहोत सारे बच्चे बैठे हैं जो एक पढ़ाई कर रहे हैं ये --

व्हाइट कलर का मकान है। यहां पर बोर्ड भी लगे हुए हैं। बोहोत अच्छे से पढ़ाई कर रे हैं।

यहां पर एक दीवार है और यहां और गेट लगा हुआ है बहुत अच्छा लग रहा है एक डूंगरों की तरह दिख रहा है यहां पर पेड़ बहुत बड़ा इसकी छांव बहुत अच्छी है।

और मशीने लगा रखे है एक मारुति खड़ी है बहोत प्यारा लग रहा है यहां का नजारा बजरी पड़ी है मकान खड़ा कर रहें ये लोग बहुत अच्छे लग रहे है।